एक ओस एक ऑफिस है यहाँ पर अंदर के तरफ काउंटर पे एक भैया बैठे हुए है सामने एक अ बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है मराठी में और यहाँ पर बाहर की तरफ चेयरे रखी है वहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं किसी के हाथ पे कुछ फाइल्स वगैरा हैं।

ये एक सैलून है जहां पे लिखा है बाल दाढ़ी सेलून एस.पी.ए. है सैलून।

एक फूलों का बगीचा है यहां पर सूरजमुखी फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं और इस फूलों के बीचों-बीच भी यहाँ पर लेडीसें दिखाई दे रही हैं जो कि वो फूलो को चुन रही हैं।